रहे हैं और दो-तीन दुकान भी दिख रही हैं और इधर पर एक घर है जिसका कलर चॉकलेटी कलर है।

और इधर पर कई सारी बिल्डिंग भी दिख रही हैं।

इस फोटो में कई सारे आदमी और कई सारी लेडीज भी दिख रही ।

इस फोटो में एक स्टैचू है जिसने ऑरेंज कलर की कुर्ती --

शलवार पहन नखि है और इधर पर कई सारे कलर के और भी कपड़े टंगे हुए हैं।

और दो कार भी पेट्रोल डलवा रहे हैं।

और अंदर कई सारे सफेद कलर की लाइट भी लगी हुई है।

यह एक किराने की दुकान में खड़े हुए हैं।

और यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड है।

और इस फोटो में कई सारा पानी और कई सारे पेड़-पौधे भी--

और इधर पर एक खंभा और एक कार भी दिख रही है।

और एक रोड दिख रहा है जिस पे कुछ भी--

इस फोटो में एक आदमी दिख रहा है जिसने नीले कलर की शर्ट --

पर कई सारे पेड़ दिख रही हैं।